ठीक सामने मुझे एक चर्च नज़र आ रहा।

बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

किचन पर एक लड़का भी मौजूद है जिसने हाथ पर काफी ली हुई है।

मुझे इस फोटो पर एक दुकान नजर आ रही है।

इस रैक पर मुझे तरह तरह की प्लास्टिक की चीजे मौजूद नजर आ रही है।

तथा इसके बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

तथा बहोत सारी कुर्सियाँ डली हुई हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा--

रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

बहोत सारी टेबलें साथ ही कुछ सोफे वह कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

बड़ी बड़ी गार्डन लगे हुए हैं जिसमें पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से बेहता हुआ झरना नज़र आ रहा--

इस तालाब के बाजू में बड़ा सा घाट भी बना हुआ नजर--

वेहे इस गेट पर मुझे दो आदमी खड़े हुए नजर आ रही हैं।

इस हॉस्पिटल पर कुर्सियों में बहोत सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस गोदाम पर मुझे बहोत सारी अलमारियां रखी हुईं नजर आ--

मुझे इस फोटो पर एक मेंन्स सैलुन नजर आ रहा हैं।

इस जिम पर मुझे बड़ी बड़ी एक्सरसाइज मशीने --

वह दो लड़के भी नजर आ रहे है।